और बेड लग रहा है देखने में सुंदर बेड दुगो खिड़की है जिसमें जाली लगा है।

यह तस्वीर में आप फुटबाल खेलने वाले लोगों को देख सकते हैं जो फुटबाल खेलते हैं ना जी और यहाँ पर गोल पुस्त बना है जी----

इसके अंदर शांत पानी का जल दिखाई पड़ रहा है। एकदम शांत और इसके बगल में एगो पा थ- हल्का सा एक घना झाड़ी नज़र आ रहा है।

शुरू वाला में इसमें कुछ भी छोटा-छोटा बच्चावा लोग को मतलब छोटे बच्चे हैं उनके लिए कपड़ा दिखाया गया है और बहुत सारा गुड़िया है।